ये एक मॉल की फोटो जहाँ पे बोहोत सारे समान बिकते है यहाँ पे बोहोत सारे निरमे के पैकेट रखे हैं।

यहाँ पर बस खड़ी हुई है। यहाँ पे बहोत सारे इंसान हैं। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने स्वेटर पहनी हुई है। यहाँ पे बोहोत सारे इंसान है।